एक पानी की आर ओ दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में सामने एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है। वह गेट लोहे के छड़ों से बना हुआ है। गेट के ऊपर एक बड़ा --

उसके हाथ मे एक मशीन है। खिड़की कत्थई रंग की है परदे लगे हैं। दीवार पर गुलदस्ते व फोटो लगे हैं।

इस पिक्चर में एक लड़का दिखाई दे रहा है उसके साथ में एक बच्चा भी है ये दोनों सेल्फी लेते दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर में एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है और मैं --

पेड़ व झाड़ दिखाई दे रहे है पीछे छोटा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

पिक्चर मे एक तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब मे जगह-जगह हरे-हरे घास दिखाई दे रहे हैं। किनारे कई सारे --

कुछ पत्ते भी उगे हुए तालब मे दिखाई दे रहे हैं। घास भी दिखाई दे रही है।

बारचे पर एक औरत का बड़ा बैनर लगा हुआ है। मकान के बाहर कइ सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वह लोग बैनर --

सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। किनारे-किनारे पेड़ पौधे हैं। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर किसी रेल्वे स्टेशन की लग रही है। पिक्चर में बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। सीढ़िया बहोत ही लंबी है। किनारे-किनारे --

नीचे एक ट्रेन की पटरियाँ भी हैं।

उसमें सारे समान रखे हुए हैं। यह अलग - अलग रंगों के हैं।

पत्ते दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह हरे हरे घास भी उगे हुये दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आसमान दिखाए दे रहा है।

बिजली के खंबे व तार दिखाई दे रहे हैं।

यह पिक्चर किसी सब्ज़ी मंडी की लग रही हैं। इसमें कई सारे सब्जियां दिखाई दे रही हैं जैसे बैगन आलू --